यहाँ पर देखे आपको एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है।

ये देखिये ह--आपको नए दिखाई दे देगी नदी में आपको कुछ हरे कलर के कुछ घ-- पत्ते कटे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहोत सी है ये देखिये वो वाला कलर देखिये थोड़ा सा--

--और यहां पे देखिए अलमारी बनी दिखी अलमारी में आपको बहुत सारी फोन की डिब्बे दिखाई दे रहे है।

इसमें देखिए आपको दो ह ह अ देखे पीछे साइड में कुछ बास दिखाई दे रहे हैं और देखिए यहाँ पे बड़ा सा पेड़ देखाई दे रहा हैं सामने आपको ट्रैक्टर के और यहाँ पे देखिए आपको कुछ खेत दिखाइए देखिए छोटे -छोटे पेड़ अ पेड़- पौधें लगे हुए हैं छोटे-छोटे --

और यहाँ पर देखिए बहोत सारे लड़के और लड़के बैठे हुए है चेयर्स मैन के पास एक कौपीस और हाथ में पेन है और ये सब रेड कलर की चेयर्स पे बैठे हुए है यहाँ पे सामने देखिए आपको एक टेबल दिखाई पड़ रही है वाइट --

लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा है इसका हाथ नीचे लटका हुआ है पीछे साइड में --

यहाँ पर देखिए आपको कुछ कैन दिखाई दे रहें यहाँ पर देखिए चार कैन रखे हुए है और यहाँ पे दो तीन बोटल रखी हुई है यहाँ पर और देखिये अ ये टि पूरा टि काउंटर रखा हुआ है।